मुझे एक डेकोरेटेड प्लेस दिख रहा है मुझे एक मोर का पुतला दिख रहा है।

और मुझे कुछ पेड़ दिख रहे हैं और कुछ लोग दिख रहे हैं।

और मुझे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं और बहोत सारे पौधे और एक जीप दिख रहा--

यहां पर मुझे एक सजा हुआ घर दिख रहा है।

मुझे एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है यहां पर बहोत सारी इट और बालू पड़ी हुई है।

मुझे कुछ पेड़ भी दिख रहा है। मुझे बड़े बड़े घर दिख रहे है। जो काफी दूर हैं और स्ट्रीट लाइट दिख रही है।

जो कि स्विमिंग पूल पर उतरता है और इस झूले का रंग अलग-अलग है।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा सा रोड दिख रहा है जो काफी खाली है और मुझे रोड पर लिखा हुआ कुछ दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा प्लेयिंग ग्राउंड दिख रहा है जो बैडमिंटन प्लेयिंग ग्राउंड है यहां पर मुझे--

जो अलग-अलग रंगों के हैं और छोटे-बड़े हैं मुझे स्ट्रीट लाइट दिख रही है मुझे कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

मुझे एक बड़ा सा लाइट पोल दिख रहा है।

मुझे एक बहोत सारे तिरंगा के झंडे दिख रहे हैं मुझे रोड पर बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।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

एक सोफा दिख रहा है दो टेबल दिख रहे हैं।

जो ब्राउन कलर के हैं मुझे और भी सामान दिख रहे हैं जो साइड में सरिया कर रखे हुए हैं।

मुझे एक लोहे का रॉड वाला गेट दिख रहा है।

जो कि ब्राउन कलर और वाइट कलर का है मुझे कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

यहाँ पर मुझे कुछ मालाएं लटकी हुई नजर आ रही है।

दिवाल पर मुझे बहोत बड़ी सी एक मैप नजर आ रही है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा स्पोर्ट्स ग्राउंड नजर आ रहा है जो कि वाइट बॉर्डर से घिरा हुआ है।

और ब्लू कलर का है मुझे तिरंगे से घिरा हुआ एक दीवार नजर आ रहा है।

वुडन काउंटर दिख रहा है मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे एक कमरा नजर आ रहा है और मुझे बड़ा सा टेबल नजर आ रहा है।

मुझे शेल्फ पर बहुत सारी सॉसेस अदर सामान दिख रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक सजा हुआ जगह दिख रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा सोफा है जो पिंक कलर का है।

जो ऊपर पर रखे हुए हैं मुझे कुछ नकली फूल --

और कुछ दूसरी चीज भी दिख रहे हैं जो सजावट के लिए यूज किए गए हैं मुझे दो पंखे दिख रहे हैं।

मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है मुझे एक जेसीबी दिख रहा है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जो शायद प्लेइंग ग्राउंड है।

और मुझे कुछ विकेट दिख रहे हैं जो किरकेट में खेले जाने के लिए यूज होता है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा शेल्फ दिख रहा है जो कि स्टील का बना हुआ है।

यहाँ पर मुझे एक सजाया हुआ जगह दिख रहा है।